ये फोटू हमें दिखाई दे रहा है जिसमे के एक कैफे का फोटू है और यहाँ पर ग्रीन कलर के गुब्बारे लगे हैं।

ये एक बहुत ही बढ़िया जगह लग रही है। यह कोई मार्केट लग रही है। यहां पर भी खड़े हैं।

इस फोटो में जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक पेड़ का फोटो लग रहा है।

यहाँ पर ये एक रेल्वे स्टेशन का व्यू है और ये अमरोहा रेलवे स्टेशन का व्यू है और यहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर भी दिखाई दे रहे है।

ये रिक्शा जो है काफी जादा नए लग रहे है और ये यहाँ पर लोग उन्हे खरीदते हैं और ये काफी जादा महंगे भी होते हैं।

रिक्शा का कलर काला लाल और भी नीला भी है और ये रिक्शे बिलकुल नए है और ये बोहोत ही बढ़िया रिक्शे हैं।

और यह एक काफी बढ़िया बस स्टेशन लग रहा है। यहाँ पर सरकारी बसें चलती हैं।